एक मंदिर के अंदर कुछ मूर्तिया रखी हुयी हैं | मूर्तिओ के सामने की ओर दानपात्र रखा हुआ है वही--

एक उद्यान बना हुआ है जिसमें हरे-भरे पौधे उगे हुए हैं वही नीचे हल्की-हल्की घास उगी हुई है।

सामने की और एक उद्यान बना हुआ है जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे उगे हुए है। पास में ही एक और ईमारत बन रही है जिसका कार्य चल चल रहा है।

यह चैनल गेट के सामने रस्ता जा रहा है जिसके आस-पास कुछ पेड़-पौधे उगे हुए है यह इमारत बदायु में बनी हुई है।

क्लिनिक के भारत का दृश्य जहां पर सामने की ओर की सड़क पर एक व्यक्ति फोन पर बात करते हुए चल रहा है वही दीवारों का रंग पीले रंग का है और --

एक यात्रा निकल रही है जहाँ पर यात्रा के वाहन को विभिन्न रंगों के फूलों से सजाया गया है। फूलों का रंग पीला सफेद लाल नारंगी है।